बन रही है| इसमें बहुत सारे सरिये वगरे पड़े हुए हैं सरिये लगी है पिलर वाली सरिये हैं| बहुत सारे मिस्त्री हैं जिन्होंने येल्लो - येल्लो वो कैप पहने हुए हैं|

बिहार ग्रामीण बैंक नाम से बैंक बना हुआ है बड़ा सा बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है वाइट कलर की ऊपर वाले फ्लोर पर विंडो दी हुई है।

जाली वाली विंडो दी हुई है लाइट के तार दिख रहा है इन बिहारी ग्रामीण बैंक जो लिखा है बड़े से वाइट कलर के बोर्ड पर लिखा है ब्लू कलर से।

काउन्टर बर्नी वगैरा रखी गई जिसके में साइकिले पड़ी हुई है दो बाहर आ साइकिल की दुकान है जिसपे शटर लगा --

इने दो पुलिस लेडी खड़ी हुई है गर्ल है पुलिस वाली उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है ।

यह डैम बना हुआ है पानी का बड़ा सा डैम बना हुआ है ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर बड़ा सा अ--दो तीन लोग है सीढ़ी लटकी हुई है नीचे काम चल रहा है मस्जिद के अंदर ।

उसमें अभी काम हुआ हुआ है बड़े-बड़े खम्भे लगे है लोहे के व्हाइट एन्ड ब्लू ब्लैक कलर के।

घी वगैरा जो जो सामान मिलता है उन सब के नाम लिखे हुए हैं आसपास की दुकानों की शटर लागी हुई हैं एक के ब्लू है एक के ऑरेंज है एंड उपर रखी है बड़ी-बड़ी मशीनें रखी है छत के ऊपर।

यहाँ ब्लैक कलर के बैग हैं ब-ब वाइट कलर के बैग हैं ग्रे कलर के हैं एंड जो एक बॉय ने ब्लू शर्ट पहेनी है एक ने वाइट एक ने वाइट एक और ने वाइट --

सरिए लगे हुए हैं ये ब्रिज बनने की तैयारी हो रही हैं एंड यहाँ पे पिल्लर लगे हुए हैं आस-पास बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिए हुए हैं लाईटे जल रही हैं अँधेरा हो रहा है नदी में जो पानी है वो थोड़ा मैला-मैला टाइप का कीचड़ कीचड़ जैसा ब्राउन कलर का हैं।